जिसमे बेसन लगा हुआ है धनिया का चटनी है बहुत स्वादिष्ट है।

तार उर है वृक्ष है येलो कलर का ग्राउन्ड है बहुत ही सुंदर है बहुत खूबसूरत नजरा है।

बहोत ही डरावना चीज है।

है और यहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे हैं |

भाई जंगल सभी नजर आ रहा है आसमान में बहुत ही अच्छा लग रहा है।

पीछे बहुत सारे गाड़ी खड़े हुए है।

ये एक किताब का दुकान है जो कि बहुत अच्छे किताब सब नजर आ रहें हैं। भगवान का भी किताब सब है।

ओ ब्रिज भी है जो की रेड कलर का --

पूल सब है बहुत ही अच्छा का स्विमिंग पुल में नहाने में अच्छा लग --

बहुत ही अच्छा लगता है दुकान पूरा भरा हुआ है बहुत हीं सुंदर लगता है दुकान सब।

स्विमिंग पुल है जिसमे चरखा सब भी उसमे पानी गिरता है।

और सूरज उगता हुआ नजर आता है बहुत ही बड़ा समुन्द्र है बहुत ही अच्छा पानी है।